बैलून फूला के वहां में रख के भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा।

यहां में एक अंकल दिखाई दे रहा है हाथ दिखाते हुए।

मुझे यहां में बहोत सारा क्रिकेट बॉल दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां में वाइट कलर की लाइन दिखाई दे रहा है।

यहां में दो गाड़ी दिखाई दे रहा है एक व्हाइट एक ब्लैक की।

यहां में एक अंकन दिखाई दे रहा है अ--

यहां रे मुझे टोकेन दो ग्रुप दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर की चार ठो गाड़ी दिखाई दे रहा है।

ये यहां में चार मिस्त्री दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां में बॉर्डर दिखाई दे रहा है।

यहां की बहुत बड़ा वाला नदी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां में एक अकल अंकल दिखाई दे रहा है टाई लगा के।

मुझे घर पे येलो कलर पेल करके दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां में ब्रिज की साइड दिखाई दे रहा है।

ऊपर में व्हाइट कलर लगा के दिखाई दे रहा है।

आसमान में लाल रंग दिखाई दे रहा है।

मुझे यह हमें इलेक्ट्रिक वायर रॉड भी दिखाई दे रहा है यहां पे।

मुझे यहां पे कलर का डिब्बा भी दिखाई दे रहा है यहां पे--

यहां भी खिड़की में एक कपड़ा को बिछा के दिखाई दे रहा है जहां पे--

साइड में बहोत ढ़ेर लोग है यहां में।

मुझे इस पिक्चर पर बहोत बड़ा घर दिखाई दे रहा हैं।

यहां पे बहोत सारा लाइट बल्ब दिखाई दे रहा है।

यहां पे टेबल व्हाइट कलर की दिखाई दे रहा है।

यहां में टेबल के ऊपर मोबाइल दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां में बहुत सारा कोकोनट पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां में बहुत सारा पत्थर लोग दिखाई दे रहा है।

जी यहां में एक दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां हमें एक लड़की दिखाई दे रहा है फेस ब्लॉड करके।

साइड में बहुत लंबा एक खंभा दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां में एक घर दिखाई दे रहा है।

यहां मे बहुत सारा चार दिखाई दे रहा है मुझे यहां में डिस्को लाइट भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पे दो सोलर लाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर की सीलिंग दिखाई दे रहा हैं।

यहां में लाल वाला गाड़ी दिखाई दे रहा है।

यहां में सीढ़ी दिखाई दे रहा है।

मशीन के ऊपर बहुत बड़ा वाला वायर दिखाई दे रहा है।

यहां में बहोत सारा फुल झूला हुए दिखाई दे रहा है।

यहां में प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा है।